यह चित्र एक सड़क का है इस चित्र मे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका रंग आसमानी व नीला है।

बालों का हेयर स्टाइल बनाने के लिए लाल कलर की क्लिप्स का यूज किया जा रहा है।

नजर आ रही है। दो व्यक्ति मशीन के पास लग कर काम कर रहे हैं।

मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है जहां पर पुरुष और महिलाए दोनों एकत्रित हैं।

हाथी की मूर्ति की सूँड पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक प्रीतियोगिता कार्यकर्म का है जहां पर कुछ लोग कुर्सीयो पर बैठे हैं।

यह चित्र एक बुक शॉप का है इस चित्र मे अनेक तरह के--

जहाँ पर चार लड़कियाँ स्कूल के ड्रेस में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं।